इस तस्वीर में एक त्यौहार या शादी का जशन दिखाई दे रहा है।

हर तरफ रोशनियों से सजावट की गई है जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

वो मशीन पर बैठ कर डंबल्स या वेट उठा रहा है।

एक आदमी हल्का नीला शर्ट पहने सामने खरा है।

आईने के रिफ्लेक्शन में और एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में सीमेंट कांक्रीट रोड बनाने का काम हो रहा है।

इस तस्वीर में एक बस स्टैंड दिख रहा है यहां पर कई बस खड़ी है।

इस तस्वीर में एक खेल का मैदान दिख रहा है।

पीछे इमारत और पेर भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत भीड़ है सड़क पर साइकिल रिक्शा मोटरसाइकिल ऑटो और गाड़ियां चल रही है।

इस तस्वीर में फूलों को दिखाया गया है।

और एक माला जैसी देखने वाली चीज को भी --

ऐसा लग रहा है की वे कोई घर बना रहे हैं।

लोगों ने रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए हैं।

जो डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं।

और वे लोग सेल्फी ले रहे हैं।

और ऐसा लग रहा है कि वे हॉस्पिटल पे हैं।

जो ऐसा लग रहा है कि वे जिम में है।

ट्रेड मिल पर चल रहे हैं।

और कुछ बैटल रोप का इस्तमाल कर रहे हैं।

बाजार में छोटी मूर्तियां और सजावट का सामान बिक रहा है।

इस तस्वीर में इंसानों को दिखाया गया हैं।

इस तस्वीर में लोगा योग करते हुए देख रहे हैं सभी लोग खुली टेरेस पर बैठे हैं।

उनके पास योगा मैट बिछाया गया है।

आगे एक छोटी इमारत भी नजर आ रही है।

सभी शांति के साथ एक जैसे आसान कर रहे हैं।

इससे आसपास के लोग अपनी रोजाना की जरूरत का सामान आसानी से ले लेते हैं।

इस तस्वीर में एक शादी का मंच दिख रहा है।

कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं और कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं।

इस तस्वीर में चार लोग दिखाया गया है।

जो अपना-अपना काम कर रहा है।

एक देख रहा है और एक कोई भारी सामान उठा रहा है।

इस तस्वीर में स्कूटर और मोटरसाइकिल दिखाया गया है।

आसपास लोग फ्लाइट में जा रहे हैं।

और ऐसा लग रहा है कि ये कोई मच्छी का बाजार है।

इस फोटो में ऐसा लग रहा है कि यहां कोई कंसर्ट का माहौल है।

ए कंसर्ट को एंजॉय कर रहे हैं।

ऐसा लग रहा है कि कोई मार्केट एरिया है।

और सामने एक इंसान और बुद्धा का पोस्टर है।

ऐसा लग रहा है कि कोई मीटिंग चल रही है।

इस तस्वीर में एक इंसान स्कूटर चला रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चे हैं।

ऐसा लग रहा है कि वे डांस टीचर है।

कोई पढ़ने का या लिखने का सामान है।

महिलाएं रंग बिरंगी वस्त्र पहने हुए हैं।

और सभी धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

इस तस्वीर में पानी पर कई रंग बिरंगी नाव दिख रहे हैं।

ये नाव किनारे पर एक साथ भी बंधी हुई है।

जैसे चंदन यात्रा या मंदिर का कोई विशेष उत्सव--

लोग बड़े उत्साह के साथ शामिल दिखाई देते हैं।

इस तस्वीर में एक लड़का टेबल पर बैठ कर पढ़ाई कर रहा है।

ये एक लाइब्रेरी या स्टडी हॉल जैसा लग रहा है।

ये कपड़े गठरियों में पैक करके रखे गए हैं।

ये जगह कपड़े की दुकान जैसी लग रही है।

नीचे ऑडियंस कुर्सियों पर बैठे है और एक प्रोग्राम या फंक्शन चल रहा है।

पीछे हरा पेड़ और झाड़ियां दिख रहे हैं।

तस्वीर से ये पता चल रहा है कि ये कोई आदर कार्ड का सेंटर लग रहा है।

इस तस्वीर में कुर्सियों और टेबलों को दिखाया गया है।

और सामने एक मंच को भी--

इस तस्वीर में इंसान को दिखाया गया है।

इस तस्वीर में दो लड़के बाउंड्री पर बैठे हैं।

मैदान में लोग खड़े हैं और पेर भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक गाड़ी को दिखाया गया है।

गाड़ी के सामने एक इंसान भी दिखाया गया है।

माहौल से ऐसा लग रहा है कि वह स्टेज में और चर्च में कोई गाना गाने जा रहे हैं।

ऐसा लग रहा है कि वे फूल बेचने आए हैं।

और लोगों को दिखाया गया है।

और उन के सामान को भी ऐसा लग रहा है कि ये कोई बस स्टॉप है।

पीछे दीवार पर रंगोली जैसी सजावट बनी हुई है।

एक नर्स और एक डॉक्टर हैं।

और ऐसा लग रहा है कि वे सामान को प्रिपेयर कर रहे हैं।

इस तस्वीर मे लोगों को दिखाया गया है।

ऐसा लग रहा है कि यहां कोई शादी का माहौल है।